इस फोटो में हमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है और पीछे ही हमें--

जिसमें की व्हाइट ब्लू और ग्रीन कलर हुआ हुआ है साथ में--

यहां पर हमें बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है साथ में ही पीछे कुछ--

इस फोटो मे हमे एक कार दिखाई दे रही है जोकि यहां पर रेड कलर की है।

टाइड लिखा हुआ है पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है जो की वाइट कलर की--

कुछ झाड़ियां दिखाई दे री है ईंटो का करह हल्का सा रेड हमें दिखाई दे रा है।

इस फोटो में हमें पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।

और पानी भरा हुआ गड्ढों में दिखाई दे रहा है।

लाइटें जलती हुई हमें नजर आ रही है।

हमें यहां पर येलो लाइट भी दिखाई दे रही है जो की--